यह एक बड़े बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग का ऊपरी ही-हिस्सा लोहे के छड़ से बनाया गया है सामने कुछ छ- पानी छोटे-छोटे झरने दिखाई दे रहे है जिससे पानी निकल रहा है।

सामने दो भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी हुइ है। इसके आसपास छोटे-छोटे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। प्रतिमा एक बड़े से पेड़ के अंदर है।

यहां एक छोटा सा गार्डन दिखाई दे रहा है जिसके चारों तरफ छोटे-छोटे पौधे लगाए गए हैं बीच में एक पत्थर पर एक आदमी की मूर्ति रखी गई है जो कि काले कलर का दिखाई दे रहा है ।